इस चित्र के अंदर एक तालाब नजर आ रहा है जिसके अंदर एक नाँव है नाँव के अंदर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है चित्र के अंदर सूरज भी दिखाई दे रहा है पीछे कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे है।

इस चित्र के अंदर एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो की काला चश्मा ल--

इस चित्र के अंदर एक घर का निर्माण दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे है पीछे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है सामने एक कच्चा मकान भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र के अंदर एक किताबों की दुकान दिखाई दे रही है जहा पे शेल्स मे सामान जमा हुआ दिख रहा है दुकान के अंदर अलग- अलग साइज़ की किताबे नजर आ रही है।

इस चित्र के अंदर एक नाई की दुकान दिख रही है दुकान बहुत सजी हुई है दुकान के अंदर दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है जो की शेव बनवा रहे है दुकान के अंदर अलग अलग आईने भी नजर आ रहे है।